यहां पर पेड़ लगे हुए हैं।

सीढ़ियां भी है यहां एक आदमी खड़ा है और आस पास--

इनमें से कुछ चीजें खाने पीने कीं हैं।

ऊपर कुछ लाइट लगाई गईं हैं।

और यहां पर एक प्रिंटर भी रखा है।